और वे गड्ढा कर रही है और कुछ लोहा गढ़ी हुई है और कुछ लोहा पड़ी हुई है जमीन --

प्लेन भी है गार्डन में लगा हुआ बड़े बड़े खंभे हैं और कुछ गमले रखे--

इस तस्वीर में सामने की ओर सात लड़कियां हैं।

और बाहर गमले रखे हुए हैं अंदर शीशा लगा हुआ है।

इस तस्वीर में सामने की ओर एक बड़ा सा घर है।